और सब पिलर उलर मे एक ही कलर किया गया है और सब रूम सेम टू सेम है और यहाँ पर आ के चकरा जायेंगे हमलोग और इधर साइड में एक आदमी उदमी भी खड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्पेट बिछाया गया है जो की बहोत ही लंबा है और हरा कलर का है।

और ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये दो तीन मंजिला लग रहा है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।